बहुत बड़ा-बड़ा पेड़-पौधा है हरा-हरा --

और पोस्टर भी लगा हुआ है उधर नवाब आफ

उर्दू में लिखा है और कैगो है चार पाँच गो पंखा है कूलर लगा हुआ है कुर्सी भी है ।

यहाँ पर एक हॉस्पिटल है डॉक्टरनी सब है हला --